प्रतीत हो रहा है जैसे की यह मरम्मत के लिए आई है यहाँ पर हमें बाहर कुछ न्यूजपेपर लगाया हुआ नजर आ रहा है।

यहाँ हमें गराज देखने को मिल रहा है। यह गराज स्टील की बनी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर बांस भी लगाया हुआ नजर आ रहा है।

ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसा कि यह मुर्गियों के मीट का दुकान हो साथ ही साथ यहाँ पर हमें कई लोग नजर आ रहे हैं और साइकिल भी देखने को मिल रहा है।

साथ ही साथ इस गोलाकार में हमे लाइट लगाई हुई दिखाई पड़ रही है और दूर देखने पर हमे बड़े-बड़े पेड़ भी नजर आ रहे है फव्वारे के किनारे हमें एक बच्ची और एक आदमी खड़ा हुआ नजर आ रहा है यह दृश्य काफी लुभावना है।

इस दृश्य मे हमे हाईवे दिखने को मिल रहा है यह हाईवे काफी बड़ा है साथ ही साथ ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे की यहाँ पे कोई चेकिंग चल रहा हो।

यहाँ पर हमें लोहे से बने पिलर को देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इसके ऊपर टीन लगा हुआ है। यह दृश्य एक कारखाने का है।

कई लोग यहां पर बनी हुई कुर्सियों पे बैठे हुए है यह दृश्य अच्छा है।

दृश्य मे हमे दुकान दिखाई दे रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे की यह कोई कैफै है यहाँ पर खाने की चीजे मिलती होंगी यहाँ पे बहुत सारे लोगों की भीड़ है ये सारे के सारे दुकान पर खड़े हैं ।

यह दृश्य एक जिम का है यहां पर हमें बहुत सारे फोटो लगाए हुए नजर आ रहे हैं।

साथ ही साथ यहा पर हमे कई लकड़ियों के ढेर दिखाई दे रहे है यह दृश्य काफी अच्छा है।

इस दृश्य में हमें बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं। बड़े और बूढ़े भी नजर आ रहे हैं।

इन्होंने कोई ये रथ को पकड़ रखा है। दूर देखने पर हमें कई घर भी नजर आ रहे हैं। आसपास हमें कई बड़े-बड़े पेड़ भी नजर आ--।